ये चन्द्र आकृति दिखाई दे रही हे पड़ी हुए है और आने एक जड़ी हैसामने पेड़ पौधे भी लगे हुए हे जड़ी भी दिखाई दे रहा है --

मोरी जे रवि हे तेला पे टोल चले हेपाहड अवे वाटर आर नर छे बहोत ही मजेदार हे।